यह चर्च है चर्च के पादरी हैं जो सामने खड़े हुए हैं चर्च वो इन्होंने जो सफेद कपड़े डाले हुए हैं।

बाबा डेरी करके लिखा हुआ है यहाँ पे मिठाई वगेरा मिलती है अ ओपन लिखा हुआ है कि ओपन है अभी --

ये बहुत बड़ा एक बंगला है बंगला जो है पूरा उसमें व्हाइट वाश हो रखी है सफ़ेद कलर का बंगला है ये।

चट्टाने हैं पहाडी चट्टाने हैं बहोत बड़े-बड़े पत्थर है और सबसे ऊपर से जो है पानी गिरता हुआ आ रहा चट्टानो से होते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है पानी --

अ कुछ लगा रखा है चेयर या कुछ है ये तो कुछ टेबल वगेरा बना रखा है ये --

यह एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट काफी अच्छा सजा रखा है और टेबल है चेयर दिख रही है ये सोफे लगे हुए हैं।

ये लाल कलर की दीवारे हैं लाल कलर की दीवारों में ये एक गेट दे रखा है अ वो काले कलर का गेट हैं डबल डोर गेट है ये अ दोनों तरफ से खुलने वाला --

गाडी का ये और कुछ मशीने वगैरा रखी हुई हैं गाडी क कुछ काम करने के लिए रेपेयरिंग या क्लीनिंग के लिए --

पेड़-पौधे है अच्छा ख़ासा पार्क बना रखा है पार्क के अन्दर जाने का रास्ता बना रखा है दीवार खड़ी करके --

औरअ एक अंकल जो की खरीदने रहे हैं हरी कलर की कमीच पहन रखी और यहाँ पे जो है मछली है।

व ऊपर जो है वो काफी अच्छे बल्ब लगा रखे हैं लाइट लाइटनिंग करने के लिए ऊपर वो सिस्टम लगा रखा है।

और उसी के बगल में एक लेडिज बेठी हुई हे और एक दो एक दो आदमी और बेठे हुए हैं लेडिज के बगल में उसी आदमी के बगल में हैं।

अ एक लड़का है टी-शर्ट पहन रखी हैं और शॉर्ट्स पहने हुए है।

एक लड़का है जो कि बाइक के ऊपर बैठा हुआ है और एक औरत हैं जो बेचारी बुर्खा पहने हुए मुस्लिम है क्योंकि।

और अ जो एक आंटी है साड़ी पहन रखी है काफी ज्यादा जो एच डी ऍफ़ सी का बैंक है--

और ये जो है फायर एंड रेसक्यू सर्विस एच क्यू एम सी सी है ।

और एक गाडी जो है लाल कलर की है जो कि जा रही है ये कोई बिल्डिंग या कुछ है रेस्टोरेंट वगेरह है।

ये एक मंदिर है अ मंदिर ही लग रहा मेरो को ये मंदिर ही है स्टैचू भी बना हुआ है एक सीढ़ियाँ हैं --

कोई भवन एक्चुअली वो भवन है काला कृति भवन और हरियाणा --

कला परिषद करके लिखा हरियाणा का कला परिषद करके लिखा है। हरियाणा का हैं ये--

या फिर मार्ट है है कोई मेगा मार्ट वगेरा कुछ यहाँ पर लेडीसो की भीड़ कुछ ज्यादा हो रही है।

ये एक आदमी है अंदर को जाते हुए अ बाइक पे बैठा हुआ है आदमी और उसी के बाहर जो है दो बाइक खड़ी हुई है।

जो ये अदमी जा रहा है बैंग लेके अन्दर को ये कुछ आफिस है किसी का--

तो कोस्टल ऊपर साउथ की तरफ का लग रहा हैं साऊथ के लैंग्वेज में लिखा हुआ है।

और वो सामने जो है सुरेश करके लिखा हुआ है सुरेश अ शेरू स्टोर है जनरल स्टोर है।

वगैरा बेच रही है --

इस नेम से जो कि कुरकुरे अ चिप्स वगेरा रखे हुए हैं ग्रीन कलर में हैं।

ऊपर से चेरी डाल रखी है और तीन चम्मच हैं यहां पर खाने के लिए।

सामने जो है बाइक खड़ी हुई है और बाइक में के सामने दो-तीन आदमी लोग खड़े हुए हैं ।

और काफी सारे लोग हैं और ये जो है मंदिर का लग रहा है मंदिर का घाट वगेरा लग रहा है कोई --

और यहाँ पर जो तीन- चार चार आठ लोग हैं आठ मजदूर हैं जो कि छत की मरम्मत म मरम्मत नहीं बना रहे हैं घर को रहे हैं --

तीन लड़के है ते एक लड़के ने हाथ पे ले रखा है --

और सामने एक लड़का खड़ा हुआ है। हॉफ टी_शर्ट में ब्लू कलर की टी_शर्ट है।

और लोटस अ आइसक्रीम कर के लिखा हुआ है नहीं लोटस कपूर आइसक्रीम लिखा है कपूर आइसक्रीम ऊपर लिखा है नीचे लोटस आइसक्रीम लिखा है ।